ये उस नदी के पानी का कलर है भूरे कलर का --

यहां पे एक लड़की है उस लड़की ने लाल कलर का गाउन पहन के रखा हुआ है।

उसके आगे पांच चार आदमी खड़े हुए एक लड़की खड़ी हुई है।

यहां पे स्विमिंग पूल के आस पास सफेद कलर की ग्रिल लगी हुई है।